स्प्रे के टाइप में दिखाई दे रहा है ।

कुछ टू एच_पी थ्री एच_पी फाइव एच_पी एक दो सबमर्सिबल पंप है।

पांच छे क्राम्पटन की मोटरे है।

यहाँ पर कुछ फाइलें रखी हुई है नोटबुक रखी हुई है।

अ मैट व मीटिंग वगैरह डाली हुई है ।

सामने कंपाउंड वॉल मै कंपाउंड वॉल में कुछ पुतले टाइप में डिज़ाइन में डिजाइनिंग की हुई है ।

बिल्डिंग के नीचे मे ए_टी_एम कुछ अ शोरूम के दुकानें लगी हुई है औ --

और साइकल कोई भी नहीं चल रहा है कोई आदमी खड़ा नहीं है नई साइकल है।

मॉड्युलर किचन है किचन का कलर अ यलो --

ग्रे टाइप है ।

उम् मॉड्युलर किचन के रैंक के अंदर में स्टील की थाली रखी हुई है कुछ ग्लासेस है ।

और क्वेरींग के लिए कुछ वो --

साइड में गिटार ले के एक लेडीज अ अ गिटार बजा रही है और --

और संगीत का प्रोग्राम चालू है पीछे बैनर लगा हुआ है ।

कस्टमर खड़े है एक साइड़ तीन जेंट्स दिखाई दे रहे हैं दो लेडीज दिखाई दे रहे हैं साइड में और भी एक जेंट्स खड़ा है।

सामने में कोई होटेल वगैरह है ।

रिसेप्शनिस्ट दिखाई दे रहे हैं अंदर में --

अ वाटर सेफ्टी के गार्ड लगा के पानी में नाव चल रही है किस चल रही है और--

और हाईवे नॅशनल हाईवे टाइप दिखाई दे रहा है आगे सामने खुला आसमान --

चाय के कप की दुकानें हैं।